आ सब एक रंग कलर के भगवा कलर के कपड़ा पहिनले हतिन धोती और गमछा टाइप |

एगो पूरान महल हय जहां पर आधा टुटल हय आधा निग हय।

इंहा एगो कॉलेज दिखाई देइ छै जहाँ दो टा आदमी जा रहल हई आ एक टा ओरत आ रहल हई ओने से ।

कुछ लोग दरसा रहल हय को कि हम बैठल छि हम बात करय छि अअ कुछ लोग अपन माथा पर सामान लेकर जा रहल हय।